उस आदमी को हम देख के यह अनुमान लगा सकते है।

यह चित्र छत्तीसगढ़ में ही स्थापित है।

जहां अनुमान लगा सकते है।

हम इस चित्र को देख के अनुमान लगा सकते है कि यह जो चित्र है एक होटल की बाहर की है।

हम देख सकते हैं इस चित्र में की यह उद्यान है।

इस चित्र में हमें एक झरना दिख रहा है।

लोग यहां बड्डे पार्टी या फिर एनिवर्सरी बनाने आते है।

की काले रंग की कुर्सी और लाल रंग का टेबल है।

हुंडई यानी हुंडई यानी एक शोरूम --

हम देख सकते हैं कि यहां काफी सारे लोग हैं।

हम इस चित्र को देख के यह समझ सकते हैं कि यह चित्र एक होटल की हैं।